तब दिख रहे है इधर बहुत सारे नज़र आ रहे है इधर मिर्ची भी दिख रही है।

और उधर भी पेड़ा भी नजर आ रहै है घास भी है हरियाली भी हैं।

शिवा है शिवा के पास एक शाम भी नजर आ रहा है टावर भी है हरियाली भी है इधर --